यहाँ पर एक जंगल है जंगल में बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं पेड़ पर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड सफेद रंग का दिख रहा है।

यहा एक रूम दिखाई दे रहा है रूम में लोहे के पाइप लगे हुए हैं पाइप पर कपड़े टंगे हुए हैं कपड़े जेंट्स --

यहाँ एक सड़क है सड़क के किनारे एक बिल्डिंग है बिल्डिंग का रंग सफेद है बिल्डिंग पे लाल रंग का दरवाजा बना हुआ है।

यहा एक दुकान है दुकान में एक अलमारी रखी हुई है अलमारी लकड़ी की है अलमारी का कलर सफेद है।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

हुआ है जिसका रंग हरा है ऊपर डंडे गड़े हुए हैं जिस पे लोवर टंगे हुए --

बड़े-बड़े पेड़ हैं पेड़ों का रंग हरा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

आसमान का रंग सफेद है नीचे बड़े-बड़े पेड़ हैं पेड़ों का रंग हरा --

पीछे कुछ सामान पड़ा हुआ दिख रहा है एक निशानी लगी हुई दिख रही है।

यहाँ पर एक सड़क है सड़क पर एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग का रंग ऑरेंज है पास में खिड़की लगी हुई है।

यहां पर एक सड़क है सड़क पर एक बहुत बड़ी होटल है होटल में कांच लगे हुए हैं एक रेलिंग बनी हुई है।

लाइटे लगी हुई है जिसका कलर सफेद है।

मूर्ति का रंग काला है सामने एक स्लिप पड़ी हुई भी दिख रही है।

यहाँ एक रूम है रूम में दीवारें हैं दीवारों का रंग गुलाबी दिख रहा है पीछे एक दरवाजा दिख रहा है।

यहां पर यह बस स्टैंड है बस स्टैंड पे बसे एक खड़ी हुई है बसे चार खड़ी हुई है दो बसों का रंग नीला और --

यहा पर एक रूम दिख रहा है रूम सफेद रंग का दिख रहा है रूम में ए.सी. दिख रहा है और दीवार पर फो --